प्लेट है ब्लैक कलर की प्लेट है जो की मांस रखा हुआ है चार पीस मांस है और क्या है की उसके बाद से फॉल्स से लपेटा हुआ है ।

इस जगह है जहा से दो रास्ता जा रहा है रास्ता यैलो कलर का रेड कलर का पैंट हुआ है अलग डिज़ाइन बना है और एक आदमी है जो की रास्ते पे जा रहा है।

ये जो जगह है जहां वहां वो शॉप सी लग रही है यहां पे बहोत सारी साड़ियां हैं और एक साड़ी ब्लू कलर की है एक साड़ी पिंक कलर की है ।

एक लकड़ी में दिल जैसा बनाकर उसमें खोसा गया है और वहां पर एक स्कूटी खड़ी है जो ब्लैक कलर की है कुछ तो दिख रहा है जो की वाइट कलर का है और ये रोड के किनारे शॉप लग रही है।

एक लड़के ने पजामा पहन रखा है पजामा और रेड रेड कलर का जूता। एक लड़के ने ब्लू कलर का जूता पहन रखा है और हाफ पैंट ।

टेबल पे रखा हुआ है थाली है खाली ब्लैक कलर की है इसमें चावल भी है चावल सफेद कलर के है इसमें सेलेड है।

ये एक स्कूल ही लग रहा है जहाँ पे बच्चों को खाना खिलाया जा रहा है बच्चे खाना खा रहे है और एक यहाँ पे एक औरत है जहाँ पे व्हाइट कलर के ड्रेस पहनी हुई है।